हॉल में लाइटिंग का प्रबंध पूरा है।

ये पिक्चर एक गौशाला की पिक्चर है।

इस शेड में सभी गाय खड़ी है और चारा चर रही--

ये पिक्चर किसी चर्च की पिक्चर हैं।

बहोत ही सुंदर लग रहा है।

ये एक डी_जे साउंड की शॉप है।

इसका रंग भी दो रंग का है।

यहां पर कुछ लड़के भांगड़ा डाल रहे हैं।

दाँत का ट्रीटमेंट करने ये वार्ड हैं।

बहोत सुंदर डेकोरेशन भी की गई है।

एक लेडी पेरेंट्स सामने बैठ के देख रही है।

ये एक गमलों का स्टोर हैं।

चर्च को बहोत सुंदर सजाया गया है।